इस विडिओ में एक सब्जी विक्रेता --

इस वीडियो में सामने माँ जगदंबा की मूर्ति दिख रही है और माँ जगदंबा --

नदी से स्नान कराए जा रहे है और --